और ये आदमी मूर्तियों पर जल चढ़ा रहा है और यहाँ पर ये काफी ज्यादा सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है ये और भी देख सकते हैं।

काफी ऊँची-ऊँची बड़ी-बड़ी चट्टानें भी है और ये बहोत ही ज्यादा बड़ी और साफ सुंदर नदी लग रही है।

जैसा की हम इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं ये एक पीले और सफ़ेद और लाल कलर की बिल्डिंग है यहाँ पर बिल्डिंग में एक बालकनी भी दिखाई दे रही है।

जैसा की हम इस फोटो में देख पा रहे है| ये एक मस्जिद का फोटो है जो की सफ़ेद कलर की मस्जिद है और ये काफी ज्यादा सुंदर किला लग रहा है।